बात करता है जाता है बड़े बड़े बिल्डिंग्स हई बड़े पेड़ हई स्मॉल प्लांट्स हई।

जरा-जरा ग्रास भई बड़े पेड़ भई।